यहां पे हिरण है और यहां पे अ खेत की तरह रखा गया है एक ग्राउंड है जो ग्राउंड के अंदर के --

ऊंचे भरे भरे है और दीवा और यहा पे बिल्डिंग नजर आ रही है जो व्हाइट कलर --

यहां पे दो साइकिल है जो यहां पे लगाई हुई है टैन की जैसे और हरा कलर का पानी नजर आ रहा है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

जिम है हेल्थ क्लब है पूल साइट फ्लश अ ग्रीन --

वाइट कलर की दिख रही और नीचे साइड है लाल कलर मारा हुआ और धूप नजर आ रही है आसमान साफ --

यहां पे पानी का झरना जा रहा है जो पत्थरों के बीच में से --

ऊपर साइड है जो यहां पे लाइटिंग का झूमर जो बहुत खूबसूरत है यहां चॉकलेटी कलर का --

एस_ए_पी फोर फाइव वन ज़ीरो और यहां पे है पी_बी सिक्स फाइव एक एक --

यहां पे एक दुकान है जो लेडीज का है यहां पे पुतलों को कुर्ती पहना के बैठाया हुआ है थहराया हुआ है।

जो यहां पे बहुत खूबसूरत कुर्ती है कॉटन की और यहां पे दुपट्टा भी है और यहां --

यहां पे मैदान है जो यहां पे बच्चे खेल रहे हैं और यहां पे है बड़े से खंबे।

और ऊँचे भी हैं और यहां पे आसमान नीला नजर आ रहा है एक टावर का खंबे यहां पे ऊंचे से ऊंचे जो यहां पे --

फोकस लगाया हुआ है यहां पे लिखा है लाउंड्री ब्लॉक डी_आर आर_एम_एल हॉस्पिटल यहां पे हॉस्पिटल का है।

ये कार को कार साफ कर रहा है और यहां पे बड़ा सा गोदाम नजर भी आ रहा है सी_सी_टी_वी कैम --